ए.सी. लगा हुआ है सीलिंग पर बहुत सारी लाइटस लगी --

यहाँ दो रैक्स बनी हुई हैं और रैक्स में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ बैंक का लोगो बना हुआ है आ साइड से ऊपर की तरफ जाने के लिये रास्ता बना --

दरवाजा लगा हुआ है स्विच बोर्ड है और दीवार पर ग्रे और ग्रीन पेंट किया हुआ है।

टयुब लाइट्स लगे हुए है। ए.सी. लगा हुआ है।

इमेज में स्टेशन पर तीन बस खड़ी हुई हैं अ घर बने हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं।